इस बिल्डिंग पर एफ टोन भी लिखा हुआ दिख रहा है।

इस रेस्टोरेंट में बहुत सारे कुर्सियां और टेबले लगी हुई है।

इस रेस्टोरेंट के ऊपर जलाजोगा रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

यहां पर छत पर पंखे लगे हुए हैं।

दीवालो पर ऐ_सी लगी हुई है।

टेबल पर टिशू पेपर और शोश रखा हुआ है यहां पर लाइटे जल रही है।

यह तिरुफाल जलप्रपात का सीन है।

जमीन पर टाइल्स लगी हुई है।

जमीन पर एक पेटी रखा हुआ है जिस पर पॉक पैंट लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में बिजली की खंभे दिख रहे हैं।

यहां पर एक डस्टबिन दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक दरवाजा दिख रहा है।

कुछ टमाटर लाल रंग के हैं कुछ टमाटर सफेद रंग के हैं।

इस तस्वीर में एक तालाब दिख रहा हैं तालाब में पानी भरा हुआ हैं।

यहां पर एक चटनी और लाल रंग का खाद्य पदार्थ दिख रहा है।

यह एक असेंबली का तस्वीर है।

जमीन पर एक लाल रंग का कारपेट --

यह मिठाई की दुकान का तस्वीर है।

यहां पर एक बिजली का मीटर दिख रहा है।

जिस पर विश्व रक्तदान दिवस लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक कमरा दिख रहा हैं।

टेबल पर टैबलेट और लैपटॉप रखा हुआ है।

काउंटर पर सॉस की डब्बे रखे हुए हैं।